इस पिक्चर में हम देख रहे की यहां पे मोइल का दुकान है।

एक आदमी वहां पे बैठे हुए हैं इधर दो आदमी खरे हैं पीछे से पेड़ है और यह जो घर है वो पीले कलर का है।

इस पिक्चर में हम देख रहे है कि एक--

आदर्श रेस्ट हाउस है और इसमें--

इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि एक मोबाइल का दुकान है इसमें--

इस पिक्चर में हम देख रहे है कि यहां पे एक सिलाई मशीन का दुकान है इसमें बहुत सारा मशीन सब रखा हुआ हैं।

इस पिक्चर में हम देख रहे है कि यहां पे एक घर है वो घर रेड कलर से रंगा हुआ हैं और यहां पर पेर भी है।

इस पिक्चर में हम देख रहे है की एक बहुत ही बड़ा घर है जो पीले कलर से रंगा हुआ है।